मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात शुरू करते हुए आज मन भरा हुआ है
10 दिन पूर्व भारतमाता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया
इन पराक्रमी वीरों ने हम सवासौ करोड़ भारतीयों की रक्षा में ख़ुद को खपा दिया
देशवासी चैन की नींद सो सकें इसलिए इन हमारे वीर सपूतों ने रातदिन एक करके रखा था
पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देशभर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है
शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदनाएँ उमड़ पड़ी हैं
इस आतंकी हिंसा के विरोध में जो आवेग आपके और मेरे मन में है वही भाव हर देशवासी के अंतर्मन में है और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवतावादी समुदायों में है
भारतमाता की रक्षा मेंअपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ
यह शहादत आतंक को समूल नष्ट करने के लिए हमें निरन्तर प्रेरित करेगीहमारे संकल्प को और मजबूत करेगी
देश के सामने आयी इस चुनौती का सामनाहम सबको जातिवाद सम्प्रदायवाद क्षेत्रवाद और बाकिसभी मतभेदों को भुलाकर करना है ताकि आतंक के खिलाफ़ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हों सशक्त हों और निर्णायक हों
हमारे सशस्त्र बल हमेशा ही अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते आये हैं
शांति की स्थापना के लिए जहाँ उन्होंने अद्भुत क्षमता दिखायी है वहीँ हमलावरों को भी उन्हीं की भाषा में जबाव देने का काम किया है
आपने देखा होगा कि हमले के 100 घन्टे के भीतर ही किस प्रकार से कदम उठाये गये हैं
सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के समूल नाश का संकल्प ले लिया है
वीर सैनिकों की शहादत के बाद मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेरणादायी बातें सामने आयी हैं उसने पूरे देश के हौंसले को और बल दिया है
बिहार के भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर के पिता रामनिरंजन जी नेदुःख की इस घड़ी में भी जिस ज़ज्बे का परिचय दिया है वह हम सबको प्रेरित करता है
उन्होंने कहा कि वे अपने दूसरे बेटे को भी दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजेंगे और जरुरत पड़ी तो ख़ुद भी लड़ने जाएँगे
ओड़िशा के जगतसिंह पुर के शहीद प्रसन्ना साहू की पत्नी मीना जी के अदम्य साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है
उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी सीआरपीएफ जोइन कराने का प्रण लिया है
जब तिरंगे में लिपटे शहीद विजय शोरेन का शव झारखण्ड के गुमला पहुँचा तो मासूम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फौज़ में जाऊँगा
इस मासूम का जज़्बा आज भारतवर्ष के बच्चेबच्चे की भावना को व्यक्त करता है
ऐसी ही भावनाएँ हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के घरघर में देखने को मिल रही हैं
हमारा एक भी वीर शहीद इसमें अपवाद नहीं है उनका परिवार अपवाद नहीं है
चाहे वो देवरिया के शहीद विजय मौर्य का परिवार हो कांगड़ा के शहीद तिलकराज के मातापिता हों या फिर कोटा के शहीद हेमराज का छः साल का बेटा हो शहीदों के हर परिवार की कहानीप्रेरणा से भरी हुई हैं
मैं युवापीढ़ी से अनुरोध करूँगा कि वो इन परिवारों ने जो जज़्बा दिखाया है जो भावना दिखायी है उसको जानें समझने का प्रयास करें
देशभक्ति क्या होती है त्यागतपस्या क्या होती है उसके लिए हमें इतिहास की पुरानी घटनाओं की ओर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी
हमारी आँखों के सामने ये जीतेजागते उदहारण हैं और यही उज्ज्वल भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण हैं
मेरे प्यारे देशवासियो आजादी के इतने लम्बे समय तक हम सबको जिस वार मेमोरियल का इन्तजार था वह अब ख़त्म होने जा रहा है
इसके बारे में देशवासियों की जिज्ञासा उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है
NarendraModiApp पर उडुपी कर्नाटक के श्री ओंकार शेट्टी जी ने नेशनल वार मेमोरियल तैयार होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है
मुझे आश्चर्य भी होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वार मेमोरियल नहीं था
एक ऐसा मेमोरियल जहाँ राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्यगाथाओं को संजो कर रखा जा सके
मैंने निश्चय किया कि देश में एक ऐसा स्मारक अवश्य होना चाहिये
हमने नेशनल वार मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि यह स्मारक इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है
कलयानि 25 फरवरी कोहम करोड़ों देशवासी इस राष्ट्रीय सैनिक स्मारक को हमारी सेना को सुपुर्द करेंगे
देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा
दिल्ली के दिल यानि वो जगह जहाँ पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है बस उसके ठीक नज़दीक में ये एक नया स्मारक बनाया गया है
मुझे विश्वास है ये देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा
राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है
स्मारक का डिजाईनहमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है
राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट फोर कॉन्सेंट्रिक Circlesयानी चार चक्रों पर केंद्रित है जहाँ एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है
अमर चक्र की लौ शहीद सैनिक की अमरता का प्रतीक है
दूसरा सर्किल वीरता चक्र का है जो सैनिकों के साहस और बहादुरी को प्रदर्शित करता है
यह एक ऐसी गैलरी है जहाँ दीवारों पर सैनिकों की बहादुरी के कारनामों को उकेरा गया है
इसके बाद त्याग चक्र है यह सर्किल सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है
इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं
इसके बाद रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदर्शित करता है
इस सर्किल में घने पेड़ों की पंक्ति है
ये पेड़ सैनिकों के प्रतीक हैं और देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हुए सन्देश दे रहे हैं कि हर पहर सैनिक सीमा पर तैनात है और देशवासी सुरक्षित है
कुल मिला कर देखें तो राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने उन पर शोध करने के उद्देश्य से आयेंगे
यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण नयौछावर कर दिए हैं ताकि हम जीवित रह सकें ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके
देश के विकास में हमारे सशस्त्र बलों पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के महान योगदान को शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है
पिछले साल अक्टूबर में मुझे नेशनल पोलिस मेमोरियल को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था
वह भी हमारे उस विचार का प्रतिबिम्ब था जिसके तहत हम मानते हैं कि देश को उन पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो अनवरत हमारी सुरक्षा में जुटे रहते हैं
मैं आशा करता हूँ कि आप राष्ट्रीय सैनिक स्मारक और नेशनल पोलिस मेमोरियल को देखने जरुर जायेंगे
आप जब भी जाएँ वहाँ ली गयी अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि दूसरें लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वे भी इस पवित्र स्थल इस मेमोरियल को देखने के लिए उत्सुक हों
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात के लिए आपके हजारों पत्र और कमेंट मुझे अलगअलग माध्यमों से पढ़ने को मिलते रहते हैं
इस बार जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था तब मुझे आतिश मुखोपाध्याय जी की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी मेरे ध्यान में आई
उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1900 में 3 मार्च को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी ये संयोग ही है कि 3 मार्च को ही जमशेदजी टाटा की जयंती भी है
और वे आगे लिखते हैं ये दोनों व्यक्तित्व पूरी तरह से दो अलगअलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं जिन्होंने झारखण्ड की विरासत और इतिहास को समृद्ध किया
मन की बात में बिरसा मुंडा और जमशेदजी टाटा को श्रद्दांजलि देने का एक प्रकार से झारखण्ड के गौरवशाली इतिहास और विरासत को नमन् करने जैसा है
आतिश जी मैं आपसे सहमत हूँ
इन दो महान विभूतियों ने झारखण्ड का नहीं पूरे देश का नाम बढ़ाया है
पूरा देश उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है
आज अगर हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरुरत है तो वह है भगवानबिरसा मुंडा
अंग्रेजों ने छिप कर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक़्त पकड़ा था जब वे सो रहे थे
क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण कार्यवाही का सहारा क्यों लिया क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भयभीत रहते थे
भगवानबिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीरकमान से ही बंदूकों और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था
दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति भारी पड़ती है
भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से ना केवल राजनीतिक आज़ादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी
अपने छोटे से जीवन में उन्होंने ये सब कर दिखाया
वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी
भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना बलिदान दे दिया
बिरसा मुंडा जैसे भारत माँ के सपूत देश के हर भाग में हुए है
शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आज़ादी की इस जंग में किसी ने योगदान ना दिया हो
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग शौर्य और बलिदान की कहानियाँ नई पीढ़ी तक पहुँची ही नहीं
अगर भगवान बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तित्व ने हमें अपने अस्तित्व का बोध कराया तो जमशेदजी टाटा जैसी शख्सियत ने देश को बड़ेबड़े संस्थान दिए
जमशेदजी टाटा सही मायने में एक दूरदृष्टा थे जिन्होंने ना केवल भारत के भविष्य को देखा बल्कि उसकी मजबूत नींव भी रखी
वे भलीभांति जानते थे कि भारत को साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का हब बनाना भविष्य के लिए आवश्यक है
ये उनका ही विजन था जिसके परिणामस्वरूप टाटा इंस्टीट्यूट ओएफ साइंस की स्थापना हुई जिसे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ओएफ साइंस कहा जाता है
यही नहीं उन्होंने टाटा स्टील जैसे कई विश्वस्तरीय संस्थानों को और उद्योगों की भी स्थापना की
जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात अमेरिकी यात्रा के दौरान शिप में हुई थी तब उन दोनों की चर्चा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रचारप्रसार से जुड़ा हुआ था
कहते हैं इसी चर्चा से इंडियन इंस्टीट्यूट ओएफ साइंस की नींव पड़ी
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दिन 4 वर्ष में एक बार ही आता है
सहज शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी मोरारजी भाई देश के सबसे अनुशासित नेताओं में से थे
स्वतंत्र भारत में संसद में सबसे अधिक बजट पेश करने का रेकॉर्ड मोरारजी भाई देसाई के ही नाम है
मोरारजी देसाई ने उस कठिन समय में भारत का कुशल नेतृत्व किया जब देश के लोकतान्त्रिक तानेबाने को खतरा था
इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनकी आभारी रहेंगी
मोरारजी भाई देसाई ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के खिलाफ आन्दोलन में खुद को झोंक दिया
इसके लिए उन्हें वृद्धावस्था में भी भारी कीमत चुकानी पड़ी
उस समय की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया
लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव जीती तो वे देश के प्रधानमंत्री बने
उनके कार्यकाल के दौरान ही 44वाँ संविधान संशोधन लाया गया
यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एमरजेंसी के दौरान जो 42वाँ संशोधन लाया गया था जिसमें सुप्रीमकोर्टकी शक्तियों को कम करने और दूसरे ऐसे प्रावधान थे जो हमारे लोकतान्त्रिक मूल्यों का हनन करते थे उनको वापिस किया गया
जैसे 44वें संशोधन के जरिये संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रावधान किया गया
इसी के तहत सुप्रीमकोर्ट की कुछ शक्तियों को बहाल किया गया
इसी संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुछेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिकअधिकारों का आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं किया जा सकता है
पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे साथ ही यह भी तय किया गया कि आपातकाल की अवधि को एक बार में छः महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है
इस तरह से मोरारजी भाई ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकाल लागू कर 1975 में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई थी वह भविष्य में फिर दोहराया ना जा सके
भारतीय लोकतंत्र के महात्म्य को बनाए रखने में उनके अमूल्य योगदान को आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद रखेंगी
एक बार फिर ऐसे महान नेता को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो हर साल की तरह इस बार भीपद्म अवार्ड को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी
आज हम एक न्यू इंडिया की ओर अग्रसर हैं
इसमें हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो ग्रासरूट लेवेल पर अपना कामनिष्काम भाव से कर रहे हैं
अपने परिश्रम के बल पर अलगअलग तरीके से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं
दरअसल वे सच्चे कर्मयोगी हैं जो जनसेवा समाजसेवा और इन सबसे से बढ़कर राष्ट्रसेवा में निःस्वार्थ जुटे रहते हैं
आपने देखा होगा जब पद्म अवार्ड की घोषणा होती है तो लोग पूछते हैं कि ये कौन है एक तरह से इसे मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो tव मैगज़ीन या अख़बारों के फ्रंट पेज पर नहीं हैं
ये चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की परवाह नहीं करते बस जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं
योगः कर्मसु कौशलम् गीता के सन्देश को वो एक प्रकार से जीते हैं
मैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ
ओडिशा के दैतारी नायक के बारे में आपने जरुर सुना होगा उन्हें कैनल मन ओएफ थे ओडिशा यूँ ही नहीं कहा जाता दैतारी नायक ने अपने गाँव में अपने हाथों से पहाड़ काटकर तीन किलोमीटर तक नहर का रास्ता बना दिया
अपने परिश्रम से सिंचाई और पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दी
गुजरात के अब्दुल गफूर खत्री जी को ही लीजिएउन्होंने कच्छ के पारंपरिक रोगन पेंटिंग को पुनर्जीवित करने का अद्भुत कार्य किया
वे इस दुर्लभ चित्रकारी को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं
अब्दुल गफूर द्वारा बनाई गई ट्री ओएफ लाइफ कलाकृति को ही मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार में दिया था
पद्म पुरस्कार पाने वालों में मराठवाड़ा के शब्बीर सैय्यद गौमाता के सेवक के रूप में जाने जाते हैं
उन्होंने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन गौमाता की सेवा में खपा दिया ये अपने आप में अनूठा है
मदुरै चिन्ना पिल्लई वही शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु में कलन्जियम आन्दोलन के जरिए पीड़ितों और शोषितों को सशक्त करने का प्रयास किया
साथ ही समुदाय आधारित लघु वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत की
अमेरिका की ताओ पोर्चोनलिंच के बारे में सुनकर आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे
Lynch आज योग की जीतीजागती संस्था बन गई है
सौ वर्ष की उम्र में भी वे दुनिया भर के लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैंऔर अब तक डेढ़ हज़ार लोगों को योग शिक्षक बना चुकी हैं
झारखण्ड में लेडी तर्ज़न के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया उन्होंने न केवल 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से बचाया बल्कि दस हज़ार महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया
ये जमुना जी के परिश्रम का ही प्रताप है कि आज गाँववाले हर बच्चे के जन्म पर 18 पेड़ और लड़की की शादी पर 10 पेड़ लगाते हैं
गुजरात की मुक्ताबेन पंकजकुमार दगली की कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी खुद दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने दिव्यांग महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है
चक्षु महिला सेवाकुन्ज नाम की संस्था की स्थापना कर वे नेत्रहीन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के पुनीत कार्य में जुटी हैं
बिहार के मुजफ्फरपुर की किसान चाची यानि राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरक है
महिला सशक्तिकरण और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में उन्होंने एक मिसाल पेश की है
किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया
उन्होंने गाँव की महिलाओं को खेती के साथ ही रोज़गार के अन्य साधनों का प्रशिक्षण दिया
खास बात यह है कि उन्होंने खेती के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का काम किया और मेरे देशवासियों शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वर्ष जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें 12 किसानों को पद्म पुरस्कार मिले हैं
आमतौर पर कृषि जगत से जुड़े हुए बहुत ही कम लोग और प्रत्यक्ष किसानी करने वाले बहुत ही कम लोग पद्मश्री की सूची में आये हैं
ये अपने आप में ये बदलते हुए हिन्दुस्तान की जीतीजागती तस्वीर है
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आज आप सब के साथ एक ऐसे दिल को छूने वाले अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ
आजकल देश में जहाँ भी जा रहा हूँ मेरा प्रयास रहता है कि आयुष्मान भारत की योजना पीएमजेई यानि पीएम जन आरोग्य योजना के कुछ लाभार्थियों से मिलूं
कुछ लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है
अकेली माँ उसके छोटे बच्चे पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रही थी
इस योजना से उसका इलाज हुआ और वो स्वस्थ हो गई
घर का मुखिया मेहनतमजदूरी करके अपने परिवार की देखभाल करने वाला एक्सीडेंट का शिकार हो गया काम नहीं कर पा रहा था इस योजना से उसको लाभ मिला और वो पुनः स्वस्थ हुआ नई ज़िन्दगी जीने लगा
भाइयोंबहनों पिछले पाँच महीनों में लगभग बारह लाख ग़रीब परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं
मैंने पाया कि ग़रीब के जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है
आप सब भी यदि किसी भी ऐसे ग़रीब व्यक्ति को जानते है जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा हो
तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताइये
यह योजना हर ऐसे ग़रीब व्यक्ति के लिए ही है
मेरे प्यारे देशवासियो स्कूलों में परीक्षा का समय शुरू होने ही वाला है
देशभर में अलगअलग शिक्षा बोर्ड अगले कुछ हफ़्तों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के बोर्ड के इम्तिहान के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगें
परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को और सभी टीचर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं
कुछ दिन पहले दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का एक बहुत बड़ा आयोजन टाउन हॉल के फॉर्मेट में हुआ
इस टाउन हॉल कार्यक्रम में मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशविदेश के करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ उनके अभिभावकों के साथ टीचर्स के साथ बात करने का अवसर मिला
परीक्षा पे चर्चा इसकी एक विशेषता यह रही कि परीक्षा से जुड़ें विभिन्न विषयों पर खुल कर बातचीत हुई
कई ऐसे पहलू सामने आए जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं
सभी विद्यार्थी उनके शिक्षक मातापिता यूट्यूब पर इस पूरे कार्यक्रम की रेकॉर्डिंग देख सकते हैंतो आने वाली परीक्षा के लिए मेरे सभी एक्साम वॉरियर्स को ढ़ेरो शुभकामनाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो भारत की बात हो और त्यौहार की बात न हो
ऐसा हो ही नहीं सकता
शायद ही हमारे देश में कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिसका महत्व ही न हो जिसका कोई त्यौहार न हो
क्योंकि हज़ारों वर्ष पुरानी संस्कृति की ये विरासत हमारे पास है
कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और इस बार तो शिवरात्रि सोमवार को है और जब शिवरात्रि सोमवार को हो तो उसका एक विशेष महत्व हमारे मनमंदिर में छा जाता है
इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरी आप सब को बहुतबहुत शुभकामनाएँ हैं
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पहले मैं काशी गया था
वहाँ मुझे दिव्यांग भाईबहनों के साथ समय बिताने का मौका मिला
उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई और उनका आत्मविश्वास वाकई प्रभावित करने वाला था प्रेरक था
बातचीत के दौरान उनमें से एक प्रज्ञाचक्षु नौजवान से जब मैं बात कर रहा था तो उसने कहा मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूँ
मैं मनोरंजन के कार्यक्रमों में मिमिक्री करता हूँतो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप किसकी मिमिक्री करते हो तो उसने बताया कि मैं प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता हूँ
तो मैंने उनसे कहा ज़रा कर के दिखाइये और मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था तो उन्होंने मन की बात में जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ उसी की पूरी मिमिक्री की और मन की बात की ही मिमिक्री की
मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग न सिर्फ मन की बात सुनते हैं बल्कि उसे कई अवसरों पर याद भी करते हैं
मैं सचमुच में उस दिव्यांग नौजवान की शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आप सब से जुड़ना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा है
रेडियो के माध्यम से मैं एक तरह से करोड़ों परिवारों से हर महीने रूबरू होता हूँ
कई बार तो आप सब से बात करते आपकी चिठ्ठियाँ पढ़ते या आपके फोन पर भेजे गए विचार सुनते मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मुझे अपने परिवार का ही हिस्सा मान लिया है
यह मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति रही है
दोस्तों चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है
अगले दो महीने हम सभी चुनाव की गहमागहमी में व्यस्त होगें
मैं स्वयं भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूँगा
स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुएअगली मन की बात मई महीने के आखरी रविवार को होगी
यानि कि मार्च महीना अप्रैल महीना और पूरा मई महीना ये तीन महीने की सारी हमारी जो भावनाएँ हैं उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत के सिलसिले का आरम्भ करूँगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूँगा
फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुतबहुत धन्यवाद करता हूँ